अपने अपने सीट पे बैठने के लिए सीढ़ीयों से ऊपर जा रहे हैं।

आगे की तरफ बहुत सारे कपड़े डले गए हैं।

आगे की तरफ लगाया गया है इसमें पीछे--

सीमेंट के ढेर सारे ढेर लगाए गए हैं अंदर।

इस चित्र में दो लड़के दिखाई दे रहे हैं जो पीठ पे बैग टांगे हुए हैं सा--

चित्र में एक रोड दिखाई दे रहा है और उसके दूसरी तरफ दो बिल्डिंग दिखाई दे रहीं हैं।

यह चित्र एक रेस्टोरेंट का लग रहा है।

और नीचे नीले कलर के करकट से छाया की गई है।